पीछे बहोत सारे समान भी दिखाई दे रहे है ऊपर कुछ मालाएं भी लटकी हुई नजर आ रही है।

ऊपर एक पीछे एक मूर्ति भी पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

एक पुरुष अपनी बाइक पे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और दो बाइक भी खड़ी हुई नज़र आ रही हैं।

जिसके पीछे बहोत सारे बड़े पत्थर भी नजर आ रहे हैं।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

इस चित्र में मुझे एक दुकान नजर आ रही है जिसमें बहोत सारे स्टेशनरी के समान दिखाइए दे रहे हैं।

जिनके हाथों में गिटार है और उनके सामने एक पियानो भी दिखाई दे रहा है।

इसके अंदर बहुत सारे कंप्यूटर दिखाई दे रहे हैं।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

जिसमें बहोत सारे कपड़े लटके हुए दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर एक पंखा और कुछ लाइटिंग्स भी नज़र आ रही हैं एक फ्रिज भी दिखाइ दे रहा है।

चित्र में मुझे एक दुकान नजर आ रहे हैं जिसमें पीछे दो कुर्सियां दिखाई दे रही हैं।

ऊपर घर में एक बड़ा सा बोट भी दिखाई दे रहा है।